बहुत अच्छा बोर्ड गढ़ा है मस्त चिड़िया दिखाई दे रहा है पेड़ -पौधा एक नंबर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है जगह भी हरा -भरा है मेरा भी दिल चाहता है कि मैं--

--का-कार भी खड़ी है बहुत ही अच्छा क्वालिटी में दिखाई दे रहा है घर बहुत ही क्यूट है प्यारा सा अच्छा लगा मेरे को।

बहुत अच्छा सीढ़ी दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक नंबर लुक है लुक बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने के बाद--

यहाँ एक नंबर का बाईक और टेंपू भी है अच्छा दिखाई दे रहा है खिड़की के साथ लुक बहुत अच्छा दिख रहा है मेरा भी इच्छा कर रहा है कि मैं भी इस बाईक से बैठ के आनंद लेता।

और अच्छा दिखाई दे रहा है इसका लुक बहुत ही अच्छा है क्या बताऊं इस लुक के बारे में मैं खुश हूँ इस जगह को देख कर--

एक नंबर गाय बैल एक चल चर रहा है यह अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में लुक इसका बहुत ही अच्छा प्यारा सा लगा।

रोड के अगल-बगल कचड़े है बहोत अच्छा जगह है जगह ब मे कोई खराबी नहीं है बहुत अच्छा है मेरे को अच्छा लगा--

बस गाड़ी खड़ी है दो बोहत ही अच्छा दिखाई दे रहा है रोड भी मेरे को अच्छा लगा और--

बहुत अच्छा घिसल पट्टी खेलने का है बच्चे लोग या हमारे लिए मेरा भी दिल कर रहा है की घिसल पट्टी में चढ़ते और--

बहुत ही अच्छा है बस स्टैंड हैं इस जगह गाड़ी खड़ी है बस अच्छा रोड दिखाई दे रहा है आदमी भी दिखाई दे रहा है जा रहा हैं।

बहुत अच्छे जगह पे पंजाब नेशनल बैंक हैं जो की सामने बाइक है और एक नंबर दिखाई दे रहा है अच्छा है इस बैंक का लुक बहुत अच्छा दिखाई दिया मुझे मैं इस बैंक से खुश हु मेरे को क्यूट लगा प्यारा सा।